लेकिन ये एक योगा क्लास है।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

ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये एक मतलब --

मास्टर माइंड बुक्स मतलब सब चीज बिकती है यहाँ पर। बहुत सारे बंदे जोकि इसको खरीद रहे है यहाँ पर।

और ये यहां पर कुछ लोग जिम भी कर रहे हैं जो कि शीशे में दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक --

इस तस्वीर में हम देख रहे है कि का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्त्री प्रेस की दुकान है जहाँ पर स्त्री करता है।

यह यह किसी धान या फिर बरसिंग का खेत है एक यह बोहोत ही हरा-भरा खेत है और यह एक सर्दी का माहौल है।